इस इमेज में सामने यहां पर एक रोड दिखाई दे रही है यहां पर दो मोटरसाइकिल भी खड़ी नजर आ रही है।